जो सफेद रंग का है यहां पे पर्दे लगे हुए हैं।

यहां पे एक मशीन है जो फिरोजी रंग की--

यहां पे एक मकान दिखाई दे रहा है जो सफेद और हरे रंग का है।

यहां पे बहुत सारे एग्रीजेशन लगे हुए हैं।

यहां पे बहोत सारी बाइके खड़ी है जो काली लाल है।